खम्बे काफी बड़े दिखाई दे रहे है खम्बो में कुछ तार नजर आ रहे हैं यहाँ पर काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ में हरी पतियाँ नजर आ रही हैं।

यहा पर एक रस्सी नज़र आ रही है यहा पर काफी सारी लकड़ियाँ दिखाई दे रहीं है पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहै हैं।

यहाँ पे काफी सारी लाइट नजर आ रही है। बाजू में एक रास्ता दिखाई दे रहा है। पीछे काफी सारे पेड़े नजर आ रहे हैं।

गाड़ी को वॉश किया जा रहा है गाड़ी को नीचे से वॉश करते हुए लड़का दिखाई दे रहा है यहां पर एक लड़के के हाथ में पाइप नजर आ रहा है लड़के ने सफेद शर्ट ब्लैक पेंट पहना हुआ है यहां पर एक खिड़की नजर आ रही --

दिखाई दे रही है। मशीन में कुछ बनाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ वर्कर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफी सारी बाल्टियां रखी हुई हैं।

मैरिज गार्डन दिखाई दे रहा है मैरिज गार्डन काफी बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक स्टेज नजर आ रहा है स्टेज को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

पीछे काफी सारा गाड़ी का सामान पड़ा हुआ है पीछे काफी सारे बम्पर दिखाई दे रहे है पीछे काफी सारे टायर ट्यूब दिखाई दे रहे है लड़का कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है।

पानी काफी सफेद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ इधर लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक अंकल आंटी खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पेड़ काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं।

स्कूल का बरंडा नजर आ रहा है यहाँ पर काफी सारे बच्चे बैठे दिखाई दे रहें हैं।